करकट का रंग सफेद है पाइप का रंग भूरा है और पोस्टर का रंग हरा और पीला सफेद है।

और सभी बेंच लकड़ी के है और सभी पे आदमी व औरते बैठे है।

आमने एक बड़ा सा स्टेज बना है उसके पीछे नीले रंग का पर्दा लगा है।

जिसमें बहोत सारे सफेद रंग का लाइट जल रहा है सामने एक पूल है।

इसमें बहुत सारे एक्वेरियम रखे हैं।

इस फोटो में एक लेबोरेट्री है जोकि एक रूम है।

और सामने जो दीवार है उसका रंग गुलाबी और ऑरेंज है।

बहोत सारा लाल रंग का दिल जैसा निकला हुआ है।

और सभी का रंग सफेद है और एक सिलाई मशीन का काला रंग है।

और बहोत सारे अलग अलग तरह के भी सामान रखे है सिलाई मशीन पे।

सामने एक लैपटॉप है जो की चालू है उसके स्क्रीन में सफेद रंग है बहुत सारे लाइट जल रही हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा दुकान है जिसमें एक साइड बेड जैसा बना है जो की सफेद रंग का है और इस पर दो लड़कियां बैठे हैं।

जोकि लकड़ी से बना है और उसके ऊपर गद्दी है और बहुत सारे चेयर है।

इस फोटो में सामने बहुत बड़ा सा टेबल लगा है।

इसमें एक ए_सी का आउटडोर यूनिट है और बहुत सारे खिड़की व गेट है।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

सामने तीन शटर है और ऊपर वाले फ्लोर पर भी एक शटर है।

इस फोटो में एक बहुत ही बड़ा सा बिल्डिंग है।

तो पहाड़ का रिफ्लेक्शन पानी में बन रहा है पानी के अंदर बहुत सारी चट्टानें है और बहुत सारी बालू है।

जैसे नीले सफेद पीले और भूरे रंग के है।

तामने एक आदमी खड़ा है जो की सफेद रंग का शर्ट पहना है और उसके सिर पर एक टोपी है।